यहा एक बैंक लिख रखा है और यहा पे--

सप्लाई बहुत अच्छी की गई है।

यहा हमें राजस्थान परिवहन अंकित किया गया है और बसे दिखाई दे रही है।

लिख रखा अंकित किया गया है यहां अच्छा दृशय अंकित है।